और इस पार्क में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं और इसमें एक सीमेंट का बना हुआ एक बड़ा झूला भी नजर आ --

और ऊपर छत पर एक पंखा व सी_सी_टी_वी भी नजर आ रहा है और एक बड़ी सी टी_वी दुकान के अंतर्गत लगी हुई है।

यह फोटो कब्रिस्तान की नजर आ रही है जिसमें बहुत सारी टैक्सियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।